ये किसी म्यूजियम का सीन लग रहा है।

ये एक पार्किंग की जगह है जहाँ पे (पर) बहुत सारी गाड़ी पार्क किए गये हैं। कुछ लोग इधर बैठे हुए भी है जैसे किसी पार्क के पास पार्किंग की जगह बनाई गयी हो।